दुकान के ऊपर बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है इसके ऊपर लिखा हुआ है इंपैक्ट वाश कपड़े हमारी पहचान है धुलाई का संपूर्ण समाधान --

बस तारे आते दिखाई दे रही है कुछ घर दिखाई दे रहे है एक टीन शेड --

एक झरना दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत तेज पानी आता दिख रहा है।

अंदर एक कुर्सी पर एक आदमी दिखाई दे रहा है और एक खड़ा है फोन पर बात करता हुआ इंसान दिखाई दे रहा है।